लगा हुआ है। ये गांव बहुत --

यहाँ लाल पीला हरा सभी तरह का फूल --

अभी बहुत शानदार लग रहा है देखने में।

और भी सर बैठे हुए हैं।

की लगा हुआ है बहुत अच्छा --

यह मंदिर बहुत सुंदर लगा इधर हरा भरा --

और मकान भी चारों तरफ बहुत सुंदर दिखने में लग रहा है मंदिर की तरफ जिसे जैसे मंदिर ही लग रहा है या मंदिर की तरह है यह मकान।

ये एक नदी है। ये नदी के ऊपर बहुत बड़ा एक पूल है।

और यहाँ वृक्ष है। बहुत अच्छा-अच्छा है। अच्छा ले दिख रहा है ये इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है।

ये पार्क है। ये पार्क में बहुत सारा चीज है। इधर ही टेबुल है। इधर वृक्ष बहुत अच्छा लग रहा है। ये पार्क कितना सुंदर लग रहा है बहुत सुंदर है ये पार्क ।